सकल नजर नही आ रहा है इतना कैसा काम क्यो करते हैं सकल छुपाने की जरूरत पड़ जाये और इसमें पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है बहुत ही गंदी शर्ट --

स्कूल नजर आ रही है स्कूल के अंदर बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उनकी टीचर वही चेक कर रही है।

और यहां पर और मुझे यहां पर पोछा लगाकर बहुत ही खुशी मिल रही --

बिल्डिंग काफी बड़ी है और मुझे बिल्डिंग पर मुझे एक कुछ नजर आ रहा है और बिल्डिंग के बाहर बहोत सी गाड़ियां भी पेड़ पौधे भी है।